हमें एक सड़क दिखाई दे रही है साथ ही सड़क पर हमें एक चौक भी नजर आ रहा --

साथ ही मुख्य द्वार पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

छत पर हमें कुछ सफेद रंग के बल्ब जलते हुए नज़र आ रहै है जो अपने रोशनी की छठा बिखेर रहै है।

व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है और एक हमें बाइक सवार व्यक्ति भी नज़र आ रहा है।

जिससे हमें दूप आती हुई दिखाई दे रही है एक बोर्ड कक्ष में लगा हुआ है साथ ही एक पंखा भी लगा हुआ है।

हमे एक भवन नज़र आ रहा है इस भवन में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर होटल स्वागतम फैमिली रेस्टोरेंट लॉज़ --

हमें एक ओवर ब्रिज के नीचे का दृश्य दिखाई दे रहा है साथ ही हमें उसे ब्रिज के बड़े-बड़े स्तम्भ नज़र आ रहे--